कुसमे का पेट्रोल पम्प है। यहाँ पे गुब्बारों से इस ऑफिस को सजाया गया है।

यहाँ पे एक लड़का है जो हैडफ़ोन लगाए हुए है और--

कपड़े से ढके हुए हैं। यहाँ पे झालर वाला लाइट है।

यहाँ छोटे-छोटे छेद दिखाई दे रहे है। यहाँ नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

ये एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में जब कोई मरीज सीरियस कंडीशन में होता है तो--

ये लोहे के जार में ऑक्सीजन गैस भरी होती है।

यहाँ पे एक लड़की दिखाई दे रही है जो उधर चल कर जा रही है।

यहाँ पे एक यज्ञशाला लिखा हुआ है। यहाँ पे एक यज्ञशाला का रूम बना हुआ है।

यहाँ पे एक बहोत बड़ा ट्रांसफार्मा वाला लाइट है जिसमें--

पीली और हल्की आसमानी रंग में पुताया हुआ है।

बड़े-बड़े पेड़ हैं। बिजली के खम्भे हैं।

यहाँ एक गुफा जैसा दिख रहा है। यहाँ पे गेबयूरिंग फॉल लिखा हुआ है।

यहाँ पे एक झोपड़ी है। यहाँ पे ट्रांसफार्मा वाले खंभे लगे हुए हैं।

यह पे डेक्स है बेंच है कुर्सियां है टेबल है। यहाँ कागज से बनाया हुआ झालर है।

एलवेसटर है और इसका भी साइड से घेरा लगा हुआ है ईंट है बालू है सीमेंट है।

अवाई नहीं किये है। इसमें लाल रंग का ही ईंट दिख रहा है इसमें घेरा लगा हुआ है पेड़ दिख रहा है ।

यहाँ बिजली के खंभे लगे हुए है। लोग यहाँ शॉपिंग खरीद ने--

कुछ चट्टानें भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक कारखाना है। ये कोयले का कारखाना है जैसे लग रहा है।

और गार्डन में बहुत से लोग बैठे हुए है। यहाँ हरा भरा घास दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है। नाइन सेवन फाइव थ्री सेवन फाइव थ्री नाइन फोर जीरो .

ये एक सब्जी का दुकान है। यहाँ पे बोरे में सब्जियां रखी गयी है। यहाँ बैंगन गाजर टमाटर--

ये एक पेट्रोल पम्प है। यहाँ पे इंडियन लिखाया हुआ है। यहाँ पे एक ऑफिस बना है जो एलवेस्टर है है। यहाँ पे एक ठेला लगा हु ठेला जैसा--